यह एक बस स्टैंड हैं यहाँ पे बहोत सारे बस लगे हुए हैं यहाँ पे पोल भी हैं अगल-बगल में बहोत सारे दुकानें हैं बाइक है बहोत सारे आदमी हैं।

यहाँ सड़क बनाने के लिए जे.सी.बी. से खुदाई हो रहा है। यहाँ पर दो लेबर दिख रहें हैं। आगे में मिट्टी से मिट्टी हटा रहें हैं शायद रास्ते रोड बनाने के लिए।